परवेशद्वार की बीचो बिच सजाया गया है यहा पर नीले और सफ़ेद पर्दो से सजाया गया और लाल रंग की पायदन बिछा हुआ है।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यहां एक कमरा है कमरे में एक बेड रखा हुआ है यहां पर पर्दे लगे हुए हैं।

एक कूड़ा दान रखा हुआ है एक टेबल पर चाय की कप रखी हुई है यहां एक टीवी भी है --

जैसा की मै देख पा रही हू यह पर किताबे रखी हुई है यहाँ एक लायब्रेरी है।

बहुत ही पुराना शीसम कि लक्कड का गेट है यह आयतकार आकार में बना हुआ है।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यह बहुत ही सुंदर दृश्य है यहां पे एक --

किनारे पर गाड़ियां लगी हुई है काफी लोग पैदल चल रहे हैं सड़क के ऊपर से एक पुल बना हुआ है।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यह एक छोटा सा होटल है यहां पर शाखाहारी और माशाहारी --

नदी के किनारे कुछ पेड़ हैं यहां पर काफी सारे लोग खड़े हुए हैं जिन्होंने मास्क लगा रखा है।

पैर को स्पर्श कर उनका आशीर्वाद ले रही है यहां पर बहुत ही सुंदर भगवान जी को सजा रखा है।

यहा पे आसमानो को चीरते हुए छोटे छोटे पहाड़ है।

घर के चारों तरफ बहुत बड़े-बड़े और लंबे-लंबे पेड़ हैं यहां पर --

घर की छत खप्परों से बनी हुई है तथा घर में तीन खिड़कियाँ है।

यहां के दरवाजे कांच के है तथा इसमें से अंदर से बाहर दीखता है और बाहर से अंदर नहीं।

दो पैया और चार पैया वाहन की सर्विसिंग होती है यहां पे दो व्यक्ति खड़े हैं।

किनारो पर बहुत सारे बड़े बड़े पेड है जो आदे पानी में डूबे हुए है समुंदर के बीचो बीच एक नाव है।

जैसा की में देख पा रही हु यह फल और सब्जीयो की एक बाजार है यहा पे फल और सब्जी उचीत दाम में मिलते है।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यह प्राकृतिक का बहुत ही सुंदर दृश्य है बड़े-बड़े चट्टानों से बनी हुई इस दीवार के ऊपर से --

किसी दुकान पे फूलो की गुलाब की वर माला है किसी में चमेली की तो किसी में गुलाब गेंदे और चमली की वर मालाये है।

कलाकारी का प्रदर्शन कर रहे है तथा चित्र बना रहे है।

यहा पर छोटे से छोटे तथा बड़े से बड़े कक्षावो के पुस्तक मिलते है यहा पर एक व्यक्ति खड़ा है।

जैसा की में देख पा रही हूँ यहा एक गेरेज है गरेज में काफी सारे खराब गाड़ीया पडी हुई है।

बना हुआ है तथा दो पिलर यहा पर स्थित है।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यहां पर एक समुंद्र का मॉडल रखा हुआ है मॉडल में --

समुद्र का पानी और एक बहुत बड़ा टाइटैनिक जहाज है उसके आगे तिरंगा झंडा लगा हुआ है।

जैसा की में देख पा रही हु यहा एक डांस अकेडेमी है इसका नाम पेस क्रीएटर डांस अकेडेमी है।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यह एक बहुत ही बड़ी इमारत है।

अंदर जाके बहुत सारे घर तथा बहुत ही सारे पेड़-पौधे लगे हुए हैं।

जहां पर पपीता केवी अनानास आदि सारे फल मिलते हैं।